अ तालाब है पार उस पार अ बहुत सारे पेड़ है छोटे-बड़े हरे काले कलर के दिख रहे हैं ।